जो काफी मेला मेला जो काफी सुंदर लग रहा है ये मेला काफी सुंदर लग रहा है यहा पे कुुछ लड़के लड़किया दिख रहे हैं जो काफी भीड़ जमा हो रखी हैं।

नजारे हैं ये काफी सुन्दर लग रही है ये शादी समारोह का सीन लग रहा है इसके काफी मकान को बाहर से काफी सुन्दर तरीके से सजाया गया है यहाँ बहुत सारे लाइटें लगी हुई हैं नजर आ रही है ये काफी सुंदर नजर आ रही है इसके अंदर --

उम्म नदी काफी फैलता हुआ नजर आ रहा है| नदी काफी साफ-सुथरी दिख रही है| नदी में कुछ लोग दिख रहे हैं जो नौका पर बैठ कर जा रहे हैं जो इसके चारों ओर काफी फूल डाले हुए दिख रहे हैं जो काफी हरियाली भरी नजर आ रही हैं जो काफी सुंदर लग रही है यहाँ पर।